यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेट्रोल पम्प है यहाँ पर एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है।

उधर दीवार के साइड देख सकते हैं बढ़िया से ग्रीन ग्रीन घास है।

और ये एक आदमी खड़ा हुआ है जा रहें हैं इन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ है रेड कलर का टी शर्ट्स पहनी हुई है --

और एक अंकल ऊपर जा रहे है अपने कपड़े करके निकल रहे है और व्हाईट कलर की गाड़ी है पूरी डूब रही है वो चल रही है।

यह एक टेंपल है और यहां पर आप देख सकते है बहुत सारे स्टूल लगे हुए हैं।

बहुत बड़े है ये और यहाँ पर दो तीन लोग खड़े हुए है नीचे उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे है और बहुत बड़ी मूर्ति है ।

और यह कोई आश्रम है जिसका प्रॉपर एड्रेस इसमें लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं ये है स्पैंड सैलून ऊपर लिखा हुआ है स्पैंड सैलून बाल दाड़ी --

और इधर एक जेन्स ने हाथ में पेपर पकड़ा हुआ है ये दवाई ले रहा है।